थीम लिंटर पे मटेरियल डाला जा रहा रहा हैसरियों के अंदर मिक्स्चर रेता बजरी सिमेन्ट सब ईटा और शीशे डालके (डालकर) लिंटर डालने की तैयारी की जा रही है लेवा --